और एक आदमी गड्ढे में है।

एक आदमी बाहर स से उसकी मदद कर रहा है।

जिसमे कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं।

और दो तीन घंटे लगे हुए हैं।

और पेड़ पौधे और साफ-सुथरा बगीचा दिख रहा है।

इसपे कुछ कोन रखी हुई है।

चित्र में यह एक लिविंग रूम है।

यह एक बहोत बड़ा पार्क है।

और उसे एक औरत बेच रही है।

व इसमें और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और पास में एक खंभा भी दिखा लगा हुआ है।

एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान के बाहर कई लोग खड़े हुए हैं।

और दुकान के अंदर बहोत से प्रकार के--

रोड पर एक टेंपो जा रहा है।